इसके बाहर दो आदमी खड़े हैं।

एक आदमी जो गेट --

ये फॉर क्रेंज इकट्ठी खड़ीं हैं।

फेस पर गोगल लगें--

सामने मूडे पर काफी लोग बैठे हैं।

ये मॉल की तस्वीर है।

ये सामने सूखा कूड़ा डालने वाला टॅंक खड़ा हैं।

यह ठेका कॉफी देसी है।

जा रहा है सामने रिसेप्शन पर --

सही कर रहे हैं इन दोनों आदमी नें--

ये चार ट्रैक्टर ट्राली इकट्ठे खड़े हैं।

पास ही एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है।